यहां पर डेकोरेशन हो रखी है बर्थडे सेलिब्रेशन की सामने टेबल रखे हैं बेंचेस रखे हैं और बैलून भी फुलाए जा रखे हैं।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक हमें बहोत सारी एक बड़ा गेट नजर आ रहा है जिस--

फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक आदमी बैठा है जिसने काले कलर का चश्मा लगा रखा है।

उसने पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है और नीचे सिल्वर कलर की जींस पहनी हुई है।

इधर हमें जमीन पर कुछ हरी घास और दुगना घास भी दिखाई दे रही हैं जिस पर पत्ते पड़े हुए है।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें कई सारे आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

ये पिंजरे में बंद आ रहा है और ये इसकी आंखें भी हमें दिखाई दे रही है जोकी ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है।

है जिसमें हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड की घास हमें हरी दिखाई दे रही है।

यह और वो फर्श पर नीचे उस ड्रिल मशीन से गड्ढा करने की कोशिश कर रहा है।

और हमें बहुत सारे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं सड़क पे पड़े हुए जो कि सूखे हैं।

इस फोटो में जैसे हम देख पा रहे हैं एक आदमी बांधे हुए नीचे बैठा हुआ है और उसने अंगोछा भी अपने गले में डाल रखा है।

ऐसा लग रहा है कि ये फाटक वाली सड़क दिखाई दे रही है जिसपे की लोग आ जा रहे हैं।

उसके बराबर एक प्लॉट में की जंगली घास भी दिखाई दे रही है और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

हमे बहोत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं हमें छत पर लगा हुआ झूमर दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है।

पीछे हम देख पा रहे हैं कि यह पोस्टर भी लगा हुआ है जिसपर लिखा है धम्म सम्मेलन और--

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक हमे आदमी दिखाई दे रहा है जिसने अपने हाथ बांधे हुए हैं ।

और हमें कई सारे कट्टे भी दिखाई दे रहे हैं जिनपर अल्ट्राटेक लिखा हुआ है।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक हमें बाइक नजर आ रही है जो हीरो होंडा लग रही है।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये किसी खिलौनो की या तस्वीर बेचने की दुकान दिक् लग रही है।

फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें एक पीले कलर का मकान या दुकान दिखाई दे रही है।

एक हमें पोस्टर भी नजर आ रहा है जिस पर डॉग्स पब्स लिखा हुआ है।

ये एक कुत्तों की दुकान लग रही है और नीचे हम देख सकते है कि कुत्तों के खाने के बर्तन भी रखे हुए हैं।

इस फोटो में जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमें बहोत सारे तस बहोत सारे पुतले नजर आ रहे हैं।

और हमें बहुत सारे पुतले नजर आ रहे हैं जिन्होंने ड्रेसस पहनी हुई हैं।

एक कैमरा भी दिख रहा है जो की निगरानी के लिए यूज किया जाता है।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं एक स्विफट गाड़ी खड़ी है जिसपे लिखा है यूपी बारह बीके पचहत्तर सत्तावन।

इस फोटो में जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये एक शादी का समारोह लग रहा है जिसमें कई सारे डी_जे रखे हुए हैं।

एल_इ_डी भी नजर आ रही है एक आदमी भी नजर आ रहा है।

और हमें दुकान पर काउंटर पर खड़े हुए दो लोग नजर भी आ रहे हैं जिसने एक व्हाईट कलर की शर्ट पहनी हुई है और दूसरे ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यह जिसके शटर पे लिखा हुआ है मिथिला बुक सेंटर ।

यहां में तीन घड़ियां भी दिखाई दे रही है और हमें हम जब अंदर देखेंगे तो हमें चश्मे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

तीन चार लोग जो हमें दिखाई दे रहे हैं उन्होंने एक ने पीले कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और सबने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और हमें व्हाइट कलर की लाइटें दिख रही हैं और ऊपर पंखे भी लगे हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।